अंदर जिम है और यहां बहुत ही सुन्दर जिम दिखाई दे रही है।

यह जिम मे फोटो निकाली गई है दो लड़के बहोत (बहुत) हेंडसम हैं जिनने फ़ोटो निकाली हैऔर ये जिम मे बहोत (बहुत) बड़ी-बड़ी मशीना रखी गई हैं ।

यहां पर एक दो टेंपो खड़े हुए हैं।